नमस्कार दोस्तों getting started with strings पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप सीखेंगेः
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि ipython console पर बुनियादी पाइथन कमांड कैसे चलाएं
यदि नहीं तो इस वेबसाइट पर पूर्वापेक्षा पाइथन ट्यूटोरियल्स देखें
strings क्या हैं
उदाहरणस्वरूप:
triple quotes में strings मल्टिपल लाइन्स में लिखा जा सकता है
हम खाली strings को भी परिभाषित कर सकते हैं string अक्षरों का संग्रह है जिन्हें बनने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है
पहले ctrl+alt+t कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें टाइप करें ipython3 और एंटर दबाएं
pylab पैकेज आरंभ करें टाइप करें %pylab और एंटर दबाएं
terminal साफ करें
टाइप करें a is equal to किसी भी quotes में hello comma world exclamation mark और एंटर दबाएं
अब string को श्रेणीबद्ध करना सीखते हैं वेरिएबल में strings असाइन करें
type करें
अब दो strings को जोड़ते हैं
print parentheses में z एंटर दबाएं
addition ऑपरेशन दो strings को श्रेणीबद्ध करने का कार्य करता है
यहाँ हम string के श्रेणीबद्धकरण का आउटपुट देख सकते हैं
terminal साफ करें
x string को रिकॉल करें
string hello गुणन के बाद 5 बार पुनरावृत होता है
विडियो को रोकें इस अध्याय का प्रयास करें और विडियो पुनः चलाएं
हल के लिए टर्मिनल पर जाएं टाइप करें s is equal to quotes में two percentages plus quotes में hyphen multiplied by twenty plus quotes में two percentages एंटर दबाएं
print parentheses में s एंटर दबाएं
अब strings के वैयक्तिक एलिमेंट्स को ऐक्सेस करना सीखते हैं हम subscripts का उपयोग करके string में वैयक्तिक एलिमेंट्स ऐक्सेस कर सकते हैं
terminal साफ करें
indexing 0 से शुरू होता है और n1 तक जाता है
negative indices का उपयोग करके आखिरी से strings को ऐक्सेस कर सकते हैं
a square brackets में minus one हमें string का आखिरी एलिमेंट देता है अर्थात exclamation mark
a square brackets में minus two हमें string के आखिरी से दूसरा एलिमेंट देता है अर्थात d
विडियो रोकें इस अध्याय को हल करने का प्रयास करें और विडियो को पुनः चलाएं दी गई string s जो कि hello world है निम्न का आउटपुट क्या है
टर्मिनल पर जाएं
terminal साफ करें
s square brackets में minus five w देता है
s square brackets में minus 15 हमें एक indexerror देता है चूंकि हमें दिए गए string केवल 11 अक्षरों के हैं
s square brackets में 15 फिर से उसी कारण indexerror देता है
string में एक अक्षर बदलते हैं
x को मेनिप्युलेट करें
हमें एक एरर क्यों मिलती है
अब हम x0 को अन्य वेल्यू b असाइन करने का प्रयास कर रहे हैं याद रखें strings को बनाने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है
हम split और join फंक्शन का उपयोग करके strings को अलग और जोड़ सकते हैं
string को जोड़ने के लिए सिंटैक्स है str dot join parentheses में sequence
टर्मिनल पर जाएं
terminal साफ करें
टाइप करें s is equal to quotes मेंhyphen एंटर दबाएं seq is equal to parentheses में a comma b comma c एंटर दबाएं
print s dot join parentheses में seq एंटर दबाएं
हमें a hyphen b hyphen c आउटपुट मिलेगा इसने a b c को hyphen के साथ जोड़ दिया है
string को अलग करने के लिए सिंटैक्स है str dot split open और close parentheses
टर्मिनल पर जाएं
हमें इस प्रकार आउटपुट मिलता है इसने spaces में strings को अलग किया है
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इस tutorial में हमने सीखा
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
1 वेरिएबल s को is called the apostrophe string असाइन करने के लिए कोड लिखें
3 वेरिएबल्स s और t strings हैं और r इंटिजर है
वे नीचे दिखाए गए अनुसार वेल्यूज के साथ असाइन किए गए हैं s multiplied by r plus t multiplied by r का आउटपुट क्या है
और उत्तर हैं दिए गए string को इस तरह असाइन किया जा सकता है
ऑपरेशनs multiplied by r plus t multiplied by r प्रत्येक दो शब्दों को दो बार प्रिंट करेगा जैसे hellohelloworldworld
कृपया अपनी समयबद्ध queries इस forum में post करें
कृपया पाइथन पर अपनी सामान्य क्वेरी इस फोरम में पोस्ट करें
fossee टीम tbc प्रोजेक्ट का संयोजन करती है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएं
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद